यह तस्वीर एक टायर की दूकान की है जहाँ पर बहोत से टायर रखे हुए है यहाँ पर एक ई-रिक्शा भी खड़ी हुई है ।

यह तस्वीर एक पार्क की है जहाँ पे झूला लगा हुआ है और उसपे एक लड़का झूल रहा है उसके आस-पास कई पेड़ लगे हुए है ।